ये पानी पूरा गन्दा दिखाई पर रहा है आसमान दिख रहा है।

और उसपे दो आदमी काम कर रहे हैं।

अभी हमें एक साइबर कैफ़े दिखाई पड़ रहा है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और वो लैपटॉप चला रहा है।

और ऊपर पहाड़ है और बोहोत सारे पेड़ पौधे हैं नदी के दोनों साइड ।

अभी हमें एक हॉल दिखाई पड़ रहा है। जो फंक्शन के लिए भी तैयार किया गया है।

अभी हमें एक बाजार दिखाई दे रहा है जिसमें मछलिया हैं।

ब्लैक कलर की रेड कलर की ह-ह एक औरत खड़ी है जो खरीद रही है और एक आदमी हैं जो बेच रहे हैं।